ये मान्यता है कि यहाँ पर अ कई सतियाँ हुई थीं कभी।

जो कि बदायूं जिले का एक मात्र प्रीमियम होटल है जिसमें बहुत ही उच्च कोटी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

जो कि देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है और कई प्रकार के फूल यहाँ मिलते भी हैं।